ये जो आप एक चित्र ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर एक आदमी खड़ा हुआ है चट्टाने हैं और ब्लू कलर की जो है वो--

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर एक बिल्डिंग सी नजर आ रही है।

और अभी ये पूरा खाली दिख रहा है इसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा है।

और वो ब बुर्खा पहनी हुई लड़की नजर आ रही है एक बिल्डिंग में जा रही है वो--

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं ये एक मैदान सा एरिया बना हुआ है बाहर पीछे जो है वो पेड़ लगे हुए हैं पहाड़ सा नजर आ रहा है और यहां पे नीचे जो है वो--

बहुत सारी चीजें भी यहां पे बनी हुई है फाउंटेन जैसी।

हर कलर के डोरमेट्स यहां रखे हुए नजर आ रहे हैं गोल भी चोकोर भी कलर्स भी अलग-अलग हैं मल्टीकलर भी मिलेंगे ।

और अब देख सकते हैं कि लड़की भी जाने की तैयारी के अंदर दिख रही है।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

पेड़ भी बेच रहे हैं ये लोग फूल भी बेच रहे हैं ये लोग बहुत सारे गमले रखे हुए हैं बहुत सारे--

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं इसके अंदर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी नर्सरी बनाई गई है बहुत सारे गमले रखे हुए हैं और

ये जो आप एक चित्र देख रहे हैं ये एक शॉप का है दो युवक इसके अंदर बैठे हुए हैं चेयर लगी हुई है ड्रॉस बनी हुई है राइट कलर की बहुत सारा सामान यहां पर मिल रहा है।